इस तस्वीर में हमे एक बड़ा सारा मंदिर दिखाई दे रहा है। एक आदमी दिखाई दे रहा है।

झंडे दिखाई दे रहें हैं। हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं। हरी घास दिखाई दे रही है।

बच्चे दिखाई दे रहें हैं। लाइटे दिखाई दे रही हैं। दिवाले दिखाई दे रहें हैं। छत दिखाई दे रहे हैं। जमीन दिखाई दे रही--